इस फोटो में एक क्लासरूम दिखाई दे रहा है बहुत सारे जो हैं वो बच्चे बैठे हुए हैं।

यह कोई गार्डन की फोटो है गार्डन में चारों तरफ को हरा घास दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एच_पी पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

खड़ी है और एक ब्लैक कलर की कार है।

और मंदिर है लकड़ी के बने हुए--

तस्वीर में जो हैं गेट दिखाई दे रहा है गोल गोल आकार का और सामने--

मूर्ति जो है वो दिखाई दे रही है और ये रास्ता जो जा रहा है उसके दोनों ओर छोटे छोटे पौधे लगे हैं।

तस्वीर में दीवार पर एक अ बोर्ड लगा है जिस पे लिखा है एम बाई टी एस और एक--

प्लेग्राउंड है जहां पर बहोत सारे--

केमिस्ट साइड में दा एक मुंह की तस्वीर दिखाई हुई है।

और एक साइड जो है वो कार खड़ी हुई है घर की जो विंडो है उसे पर वाइट कलर है।

कुछ लाइट्स भी लगी हैं बहोत ही सुंदर सामने बहुत सारे हरे--

यह इस तस्वीर में अ एक आदमी एक औरत साइड में बैठे हुए हैं।

यह एक रिसेप्शन रूम हो सकता है जिसके छज्जे में ग्रीन रंग की है। एक औरत जो है वह अंदर से बाहर आती हुई--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

सामने जो वो लकड़ी की अलमारियां बनी हुई है जिनके ऊपर कुछ चित्र लगाए हुए हैं।

अ बिल्डिंग जो है वो ये इसकी विंडो दिखाई दे रही है।

और उसने ब्लैक कलर ग्लव्स पहने--